और अगल बगल किसानों ने बहुत ही तेज ही रफ़्तार में खेती की फसले की है और उसके बीच में थोड़ी सी जगह बची है जहाँ से गाय का बछड़ा भाग रहा है।

पोस्टर नज़र आ रहा होगा और इसके पीछे माँ सीता का पोस्टर नज़र आ रहा है माँ सीता में --

यह देख के आप समझ ही गए होंगे की यह बस डेपो है जहाँ पर बस खड़े रहते है।